बहुत सारी सीढ़ियां हैं और एक आदमी है जो अंदर की तरफ जा रहा है साइड में सीढ़ियों पर बहुत सारे लोग बैठे हैं।

और आगे एक अच्छी सी खूबसूरत--

कुछ कुछ लोग बातें कर रहे हैं और कुछ चल रहे हैं।

यहाँ पे एक रास्ता है जो आगे पार्क की तरफ जाता है।

और ये मस्जिद के सामने एक दो आदमी हैं एक ने काला--

यहाँ पर एक बड़ा सा समुंद्र दिखाई दे रहा है।

ये एक बड़ा सा शोरूम है गाड़ियों का।

तो उगाया जाता है उसके बाद वो पकाया जाता है फिर हम खाते हैं किसी ने जमीन पर--